और यहाँ से फिसल के और जाके स्विमिंग पूल में नहाते हैं और लोगो को इसमें बहुत ही आनंद आता है।